बहुत आदमी बैठे हैं और खड़े होकर कुछ देख रहे हैं नदी में और यहां पर एक साइकिल लाया है।

यहां पर ऊपर पेंट प कुछ लिखा हुआ है यह एक--

और ऊपर पंखा है और बाल है और वहां पर ए_सी है।

फोटो बनाया और ऊपर व्हाइट कलर का और भूरा कलर का है।

आ ये लड़की रेड कलर की सलवार सूट पहेनी है और चादर रेड कलर का है।

यहां पर लोहा का गेट रास्ता बना हुआ है कि इसके अंदर कोई ना घुसे।

एक बड़ा सा टीले यहां पर मिट्टी कोडाया यहां पर बहुत सारी मिट्टी है।

यह एक बड़ा सा दुकान है जिसमें बहुत सारा ये बोल ओल दिखाई दे रहा है यहां पर माता जी का--

अरे इसमें अंदर भी पंखा चला यहां पर बल्ब भी है और सीढ़ी लं--

इंडिया ऑयल लिखा है और यहां पर बड़ा सा एक घर है।

चेयर बहोत सारे एक आदमी है और यहां पर पूजा भी हुआ है इसका और ए_सी --

अहा व्हाइट कलर का ये है कुरकुरे और हैं।

टाइल्स लगा है उसके बाद यहां बहुत सारे कुरकुरे हैं बोरे मे कुछ रखा हुआ हैं शीशा का कुछ भी--

तल में पानी और गिलास है बहुत सारे लोग भी हैं मतलब यहां पर टी_वी भी है।

ये व्हाइट कलर का भी है यहां प बहुत सारा दरवाजा खिड़की यहां पर एक औरत है दो टेबुल है और यहां पर--